और उसके पीछे में ऊँचे ऊँचे पेड़ पौधे है । और नदी के अगल बगल में बहोत सारे पत्थर है और पेड़ पौधे लगे हुए।

ये तस्वीर के सामने एक पुस्तकालय की दूकान है जिसमे लिखा हुआ है प्रगति बुक सेंटर । और उसमे बहुत सारी पुस्तका रखी हुई है।

जो अलग अलग तरह की पुस्तके है। और एक आदमी पुस्तकालय के सामने बैठी हुई है जो सफ़ेद कलर की शर्ट पेहने हुए है। और दूकान अंदर भी बहोत सारे पुस्तक रखे हुए।

ये तस्वीर के अनुसार सामने एक चर्च है। और चर्च मैं बहोत सारे नन है और बहोत सारे फादर भी है। और वो सफ़ेद सब सफ़ेद कलर के कपडे पेहने हुए है।

जो सफ़ेद कलर की टी शर्ट पहने हुए है। और सामने सेलून मैं बहोत सारे आदमी है और बहोत सारे सामान--

ये जो तस्वीर के अनुसार सामने दो आदमी खडे हो करके हे । और ये सफ़ेद कलर की शर्ट पेहने हुए है। और सामने ए_टी_एम है।

और एक प्रतिमा बनी हुई है। और बहोत सारे बच्चे बच्चियां खड़े हो कर के है जो अलग अलग तरह के कपडे पेहने हुए है। और लोहा के एक रेलिंग लगे हुए--